ग्राउंड सा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का ग्राउंड है ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है जो कि वाइट अ कलर का है और स्काई कलर के दिख रहे हैं नीचे में --

पूरा ग्रीन कलर का घास दिखाई दे रहा है साइड साइड में पूरा गार्डन जैसा गांछ लगा हुआ है और कुछ पीछे साइड में कुछ बिल्डिंग्स --

साइड में गाछ वगैरह दिखाई दे रहा है कुछ ग्रीन ग्रीन से लंबे से घास --

कोई शॉप सालोन टाइप का जनस सालोन जैसा दिखाई दे रहा है जिसके बाहर में कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं लड़के के जो एक सनग्लास --

और मंदिर साथ जगह दिखाई दे रहा है जहां बहुत ही बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ब्रिज स्टेशन जैसा कुछ लोग दिखाई दे रहा है जहां ब्रिज जैसे ओवर ब्रिज जैसे दिखाई दे रहा है जिसमें सिड़ी है ब्रिज है कुछ--

प्लास्टर जैसा नीचे में का फर्श ब्लैक कलर का मार्बल टाइल जैसा दिख रहा है कुछ लोग--

चलाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बुढा वाइट पजामा पहना हुआ है।

काम चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है सारा समान इधर-उधर बिखरे --

कोई बुक शॉप सा या कोई क्लास सा दिखाई जा दिखाया जा रहा है जहां पर ही किसी विषय में बताया जा रहा है जहां बहुत सारी--

फोटो लेता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख अ दिख रहे हैं जिसपे एक लड़का ब्लैक कलर का ट टीशर्ट --

मंडप जैसा दिखाई दे रहा हैं जहा परकुछ लेडीज है जो कि येलो कलर का दुपट्टा पहनी हुई है।

से वो सूर्यदेव का मूर्ति जैसा कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है जो कि रेड वाइट कलर में है क्रीम कलर में है और--

घर में बलून से डेकोरेशन किए गए हैं पेस्टून देकर के पतले-पतले--

बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे एक लोग ब्ल्यू कलर का कुर्ते में डाउन से झुका हुआ और एक बच्चा--

एक मैकेनिक कार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें केवल मैकेनिक के सामने मे कुछ कपड़े है गंदे कपड़े है।

और वो आदमी वाइट ग्रे ब्लैक चैक कलर का शर्ट पहना हुआ ब्लू कलर का ट्राउजर--

बाहर गार्डन टाइप का कुछ दिखाई दिखाई देना है जहां पर ही कुछ शादी जैसे डेकोरेशन जैसा कुछ भी--

लगाया है जो कि किसी होटल के बाहर का दिखाई दे रहा है बाहर में चेयर्स वगैरह हैं और एक चेयर्स पे कुछ कपड़े--

जैसे रखे हुए हैं बाहर में बहुत सारी गांचे दिखाई दे रही है जहां केला का पेड़ नारियल का पेड़ और बहुत तरह की सुपारी--

ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ फर्श पानी से गीले पड़े हैं कुछ पानी कुछ फर्श सूखे--

किसी गुफा जैसा कुछ दिखाया जा रहा है जहां एक शिव पार्वती का मूर्ति दिखाया--

एक रूम दिखाया जा रहा है उस रूम के बाहर में कुछ अ बॉक्स जैसे लगे हुए हैं जो किसी ग्रीन कलर के ऊपर क--

वो जैकेट स्टार्टर पहना हुआ मफलर रैप किया हुआ है उसके हाथ में कुछ सामान है और एक आदमी जो कि येलो कलर में जैकेट पहना हुआ है उसमें ब्लैक कहै--

कलर की चेक चेक के स्टॉल ली हुई है टोपी पहने हुए हैं कुछ आदमी पेपर्स लिए हुए हैं हाथ में लेकर के खड़े हैं उसके हाथ में रिंग है।

सीटी कार्ड जैसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाहर में एक लड़का है जो कि जैकेट पहने हुए और जैकेट में हाथ डाले हुए खड़ा है।

ब्राउन कलर का जैकेट पहने हुए है वाइट कलर का जींस पहने हुए है ब्लैक कलर का शूज है ग्रीन कलर की नीचे की मैड्रेस है पीछे में एक आदमी है जो दो लोग --

चेयर लगा हुआ है चेयर के नीचे की फर्स थोड़ी सी फटी टाइप की दिखाई दे रही--

बाहर में होटल यूनिटी यूनिट जिसमें लिखा हुआ है वो --

किसी चीज की दुकान को दिखाया गया है जिसमें रिसेप्शन पे एक लोग बैठे हुए हैं जो कि--

चेयर लगे हुए उसके ऊपर माला लगी हुई है पीछे वुडन की वॉल है सामने में एक अलमीरा टाइप का है जिसमें कुछ का--

कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि एक लोग क्रिश्चियन से दिखाई दे रहे हैं वो वाइट कलर के पूरे ड्रेस में है और उसके--

लेडीज दिखाई दे रही है वो वाइट कलर के ड्रेस में है उसके बगल में एक--

पेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि ब्लू कलर में है ग्रीन कलर में है ब्लैक कलर में--

लाइन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है नीचे में नीचे मिट्टी है एक बगल में पोल जैसा है एक लेडीज है जो कि स्वेटर--

पिंक कलर का लेगिंग्स पहनी है और रेड प्रिंटेड फ्लावर में कुछ कुर्ती सी पहनी हुई है।

आदमी दिखाई दे रहा है जो मछली बेसता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास छोटे-छोटे बहुत सारे मछली दिखाई दे रहे उसके पास --

एक तराजू भी है वो रेड कलर के चादर पर मछलीबेचता हुआ दिखाई दे रहा है सामने में एक आदमी है जो कि बहुत सारी मछलियों को चुनता हुआ दिखाई दे रहा है।

आदमी का हाफ जींस दिखाई दे रहा है और एक आदमी लुंगी पहने हुए हैं।

तेल होतरा ओटो से स्प्रे जैसा कुछ लिखा हुआ है जिसके नीचे कुछ लोग खड़े हैं।

मार्बल्स लगी हुई है बाइक्स लगी हुई हैं कुछ कार्टन जैसा रख हुआ है।

और ब्लैक कलर के बोर्ड पे कुछ सेलोतरा जैसा बाइक लिखा हुआ है।

ग्रीन कलर का शूज पहने वो और वो कमर पे हाथ रखते हुए दिखाई दे रहा है कुछ बैठने की जगह है भी बगल में दिखाई दे रही है स्विमिंग पूल टाइप की उसमें पानी है।

येलो कलर ऑरेंज कलर के रुमाल दिखाई दे रही है नीचे मैट्रेस वगैरह बिछाए गए हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं और वाइट कलर के बॉर्डर्स --

कलर में स्काई कलर से कुछ लिखा हुआ है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें वायर्स वगैरा ऊपर से गए हैं।